यह एक बहुत ही खूबसूरत-सा सरकारी कार्यालय लग रहा है। सामने की तरफ एक ट्यूबलाइट दिख रही है बायें तरफ --

यह एक मंदिर का एंट्री गेट है। जहाँ पे श्री मायत्री विद्या मंदिर लिखा हुआ ब्लू_कलर का बोर्ड लगा हुआ है। यह एक एंट्री_गेट है इसके--